गाइस हुई दिख रही है बालकनी दिख रही है पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

टी.वी वाला एच.डी दिख रही है कैंडल दिख रही है मिक्सी दिख रही है।

एक जवान लड़का एक चांद दिख रहा है लाइट दिख रही है बोर्ड लग रहा है। ।

एक लड़का दिख रहा है वो फोटो लेते हुए दिख रहा है और उसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है उसका आंख दिख रही है कान दिख रहा है नाक दिख रहा है लुक दिख रहा है मुंह दिख रहा ।

ताल लगे दिख रहा है तीन चार अंकल दिख रहे है दो आंटिया दिख रही है एक आंटी ने सूट पहन रखा है एक ने साड़ी पहन रखी है |

ये दिख रहा है --

सड़क दिख रही है जिसमें व्हाइट कलर की लाइनिंग --

एक पेंट टंगे हुए दिख रहा है कुछ रखे हुए दिख रहा है।